एक मोल दिख रहा है कांच कांच का गेट लगा है कांच में अन्दर लोग खड़े हुए हैं पुतला कपड़े पहने हुए हैं और यहाँ लेडीजे खड़ी हुई हैं अँधेरा दिख रहा है खम्बा दिख रहा हैं।

बाइक खड़ी हुई है और--